यहाँ पर हरे पेड़ नज़र आ रहे हैं। सूर्य की किरणें नज़र आ रहे हैं।

प्रस्तुत चित्र में हमें गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है गुलाबो के फूल की संख्या अधिक है गुलाब के फूलों के ऊपर हमें पानी के बूंदे भी दिखाई दे रही हैं।

मोर के बाजू में हमें लकड़े दिखाई दे रहे हैं। लकड़ियों के ऊपर हमें कुछ कपड़े नजर आ रहे हैं। लकड़ो के बाजू में हमें केलों की पत्तियां नजर आ रही है।

साथ में हमें पेड़ नजर आ रहे पेड़ों की पत्तियों का कलर हमें हरगा- हाराल कलर दिखाई दे रहा है एवं सीमेंट के कलर के यह पत्थर दिखाई दे रहे है जिनका कलर ग्रे है। यह गोल्डन भी नहीं होते हैं।